यहाँ पर जिम जैसा दिखाई दे रहा है|जिम की मशीन रखी है बहुत सारी| एक लड़का जिम कर रहा है साइकल चला रहा है जिम की और यहाँ पर्दे लगे हुई है रेड कलर के कांच लगे हुए हैं।